यह एक होटल है इस होटल को बहुत अच्छी तरह से सजाया गया है।

यह एक महिंद्रा की सर्विस सेंटर है यहाँ पे महिंद्रा गाड़ियों की सर्विसिंग की जाती है।